और ये जो है काफी कम पानी इसमें बना है जो की पहाड़ी एरिया में इस तरह का बनाया जाता है।

लोग यहाँ पे एन्जॉय करने घूमने के लिए दोस्त के साथ हमेशा आते रहते है जो की आना भी चाहिए।